टेबल में एक वाटर बोतल भी दिखाई दे रहे हैं।

चश्मा पहना हुआ एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।

पेन और पेंसिल्स भी दिखाई दे रहे--

सफेद रंग का बैलून्स बहोत सारा दिखाई दे रहे--

वॉल में फोटो फ्रेम भी लगाया हुआ दिखाई दे रहे।

टेबल के ऊपर में टिशूज भी दिखाई दे रहे हैं।

बीच में एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।

इसमें बड़ा से लाल रंग का मशीन गाड़ी भी दिखाई दे रहे हैं।

बाहर में चार आदमी खड़ा हुआ भी दिखाई दे रहा है।

स्वामी जी का फोटो दिखाई दे रहा है।

बाहर में बहुत सारा लोग खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।

बिल्डिंग के बाहर में कपड़ा सुखाया हुआ दिखाई दे रहा है।

काला रंग का हैंगरस भी दिखाई दे रहा है।

इस में अलग अलग साइज का टी_वी दिखाई दे रहे है।

सफेद रंग का फूल का गमला भी दिखाई दे रहे हैं।

लाइट बल्ब और स्विच बॉक्स भी दिखाई दे रहा है।

रंग का बलूंस भी दिखाई दे रहा है।

सफेद रंग का लाइट बल्ब चमकता हुआ भी दिखाई दे रहा है।

नार में अलग अलग झंडा भी लगाया हुआ है।

ऊपर में सुंदर से छोटे छोटे पेड़ भी दिखाई दे रहा है।

यह मॉनेस्ट्री पीला और सफेद रंग का है।

अलग अलग रंग का हॉफ पेंट और गंजी भी दिखाई दे रहा है।

इसमें एक बड़ा सा बिल्डिंग दिखाई दे रहा है।

बाहर में बड़ा सा ओप्पो लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

नीचे में वेस्टर्न टॉयलेट भी दिखाई दे रहे हैं।

काला और लाल रंग का एक स्कूटी भी दिखाई दे रहे--